यहां पर कुछ झूले लगाए हुए--

यहां पर बहुत सारे रंगों का --

यहां पर कुछ बेंच रखे हुए हैं।

कुछ खाने-पीने का समान रखा हुआ है।

यह एक सब्जी की दुकान है।

यहां पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई--

जिसमें की गाड़ियों का काम होता है और यहां पर--